और वहाँ पर उम एक बाल्टी रखी हुई हैं और कुछ झाड़ू लिए हुए हैं जो कि उस पर मम झाड़ू से उस पर लगा रहें हैं और वहाँ पर बहुत सारे पेड़ भी लगी हुई दिखाई दे रही हैं मकान भी बना हुआ--

नारियल के बहुत सारे पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे हैं और अन्य पेड़ भी बहुत सारे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं वहाँ पर एक व्यक्ति बेग टाँगे हुए खड़ा हुआ दिखाई दे रहा हैं और मकान भी बना हुआ--

वहाँ पर एक स्टूल बैठने के लिए डली है एक कूत्ता भी वहाँ पर बैठा हुआ है दिखाई दे रहा है और वहाँ पर बिजली वाले तार भी निकले हुए दिखाई दे रहे हैं और बिजली वाला खंभा भी गड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

यह बैठी हुई है और वहाँ पर कुछ लड़कियां खड़ी हुई दिखाई दे रही है और एक लड़का सफेद शर्ट पहने हुए वहा पर खड़ा है जिसके हाथ में एक पीले कलर का झंडा है।

जोकी नई जोड़ी में हैं जोकी गले में भी जयमाला भी पहने हुए हैं वहां पर एक पंडित जी। दिखाई दे रहे हैं और उस लड़की के माता-पिता भी है और लड़के के भी माता-पिता दिखाई दे रहे हैं।